दिख रहे हैं सामने बोर्ड पे टीचर उनको कुछ काम करके दिखा रहा है दिख रहा है।

और ऊपर भी बहुत सारा समान रखा हुआ है कुछ पेंटिंगे लगी हैं।

रिबन से सजाया गया है और कैफे के बाहर सीढ़ियां बनी है सीढ़ियों पर बहोत सारे गमले रखे हुए हैं गमले लाल और हरे रंग के हैं।

इस चित्र में हमें एक पार्क दिखाया गया है और पार्क में--

दूसरे बच्चे ने श्वेत रंग की बनियान और नीचे बैंगनी रंग का कच्छा डाला है।